नमस्कार installing software in ubuntu linux 1604 operating system पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि ubuntu linux 1604 operating system में terminal
synaptic package manager और ubuntu software center के माध्यम से सॉफ्टवेयर कैसे संस्थापित करें
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux 1604 operating system
इस tutorial के साथ आगे बढ़ने के लिए आपका internet से जुड़ना अनिवार्य है
आप system administrator होने चाहिए या सॉफ्टवेयर संस्थापित करने के लिए आपके पास administrator rights होने चाहिए
synaptic package manager a p t के लिए graphical program है
यह aptget command line utility के लिए gui है
default रूप से synaptic package manager ubuntu linux 1604 में पहले से संस्थापित नहीं रहेगा
अब सीखते हैं कि terminal द्वारा इसे कैसे संस्थापित करें
अपने keyboard पर ctrl alt और t कीज एक साथ दबाकर terminal खोलें
अब terminal में type करें sudo space a p t hyphen get space install space s y n a p और टैब की दबाएं
यह s y n a p से शुरू सॉफ्टवेयर की सूची दर्शाएगा
अब synaptic शब्द पूर्ण करें और एंटर दबाएं
आपको अपना administrator password प्रविष्ट करने के लिए कहा जाएगा
enter your अपना admin password प्रविष्ट करें
terminal में password टाइप करते समय यह हमें दिखाई नहीं देता है अतः ध्यानपूर्वक टाइप करें
enter दबाएं
अब terminal संस्थापित किए जाने वाले packages की सूची प्रदर्शित करता है
और downloaded की जाने वाली files के size और संस्थापन के बाद disk space के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है
इसकी पुष्टि के लिए y दबाएं
enter दबाएं
अब संस्थापन शुरू हो गया है आपकी internet की गति के आधार पर यह पूर्ण होने में थोड़ा समय the सकता है
अब हमने synaptic package manager सफलतापूर्वक संस्थापित कर दिया है
terminal बंद करें
संस्थापन की पुष्टि करने के लिए dash home पर जाएं search bar में synaptic type करें
हम search रिजल्ट में synaptic package manager icon देख सकते हैं
अब सीखते हैं कि synaptic package manager का उपयोग करके सॉफ्टवेयर कैसे संस्थापित करें
synaptic package manager icon पर click करें
एक authentication dialog box दिखाई देता है जो password के लिए कहता है
admin password type करें और enter दबाएं
जब हम पहली बार synaptic package manager का उपयोग करते हैं तो एक introduction dialog box प्रदर्शित होता है
इस dialog box में जानकारी है कि synaptic package manager का उपयोग कैसे करें
dialog box बंद करने के लिए close button पर click करें
synaptic package manager में proxy और repository कंफिगर करें
हमें इसे application या package संस्थापित करने से पहले करना चाहिए
settings पर जाएं और preferences पर click करें
यहाँ preferences window में कई tabs हैं जो screen पर दिखाई देते हैं
proxy settings कंफिगर करने के लिए network पर click करें
यहाँ proxy server में दो options हैं– direct connection और manual proxy
मैं direct connection का उपयोग कर रहा हूँ
window बंद करने के लिए ok button पर click करें
अब फिर से setting पर जाएं और repositories पर click करें
software & updates window screen पर प्रदर्शित होता है
यहाँ ubuntu software download करने के लिए कई sources हैं
drop down menu से download पर click करें और repositories की सूची देखने के लिए mouse button पकड़कर रखें
other दुनिया भर के servers की सूची दर्शाता है
window को बंद करने के लिए नीचे cancel button पर click करें
i जैसा की यहाँ दिखाया गया है मैं server for india का उपयोग कर रही हूँ
software sources window को बंद करने के लिए close button पर click करें
यदि आप पहली बार synaptic package manager का उपयोग कर रहे हैं तो आपको packages फिर से लोड करने की आवश्यकता है
ऐसा करने के लिए toolbar में reload button पर click करें
यह कुछ सेकेंड्स ले सकता है
यहाँ देखें हम देखते हैं कि packages internet के माध्यम से स्थानांतरित किए जा रहे हैं और अपडेट हो रहे हैं
एक उदाहरण के रूप में मैं vlc player संस्थापित करूँगा
search field field पर जाएं जो toolbar पर मौजूद है
search dialog box में type करें vlc और फिर search button पर click करें
यहाँ हम सभी vlc packages देख सकते हैं जो सूचीबद्ध हैं
vlc packages चुनने के लिए चेकबॉक्स पर rightclick करें और फिर दिखाए गए मेन्यू से mark for installation ऑप्शन चुनें
repository packages की पूर्ण सूची दर्शाते हुए एक dialog box प्रदर्शित होता है
सभी dependencies packages स्वतः ही mark करने के लिए mark button पर click करें
toolbar पर जाएं और apply button पर click करें
संस्थापित किए जाने वाले packages का विवरण दिखाते हुए summary window प्रदर्शित होता है
संस्थापन शुरू करने के लिए नीचे apply button पर click करें
संस्थापन की प्रक्रिया थोड़ा समय लेगी
यह संस्थापित किए जाने वाले packages के size और संख्या पर निर्भर है
applying changes window बंद हो जायेगा जैसे ही संस्थापन पूर्ण होगा
synaptic package manager window बंद करें
अब सत्यापित करें कि क्या vlc player सफलतापूर्वक संस्थापित हो गया है
dash home पर जाएं
search bar में type करें vlc
हम प्रदर्शित सूची में vlc icon देख सकते हैं इसे खोलने के लिए इस पर क्लिक करें
इसी तरह हम synaptic package manager का उपयोग करके अन्य applications संस्थापित कर सकते हैं
आगे हम सीखेंगे कि ubuntu software center के माध्यम से सॉफ्टवेयर कैसे संस्थापित करें
ubuntu software center एक application है जो हमें ubuntu linux os पर सॉफ्टवेयर के प्रबंधन की अनुमति देता है
आप इसका उपयोग सॉफ्टवेयर को खोजने download संस्थापन अपडेट या संस्थापन रद्द करने के लिए कर सकते हैं
यह आपको उपयोग करने से पहले ही software के बारे में जानकारी भी देता है
ubuntu software center खोलने के लिए launcher पर जाएं
icon ubuntu software पर click करें
ubuntu software centre window प्रदर्शित होता है
at the top we can see 3 tabsall installed and updates
all टैब पर click करें
हम ऊपर search bar देख सकते हैं
यह हमें उपलब्ध software को खोजने में मदद करेगा
अब software inkscape संस्थापित करते हैं
search bar में type करें inkscape
inkscape के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदर्शित होती है
अब दाएं कोने पर install button पर click करें
authentication dialog box दिखाई देता है
अपना admin password प्रविष्ट करें और फिर authenticate button पर click करें
progress bar दर्शाता है कि inkscape संस्थापित हो रहा है
संस्थापन packages की संख्या और size के आधार पर कुछ समय ले सकता है
ऊपर installed टैब में भी progress दर्शाया गया है इस पर क्लिक करें
आप किसी भी संस्थापन के दौरान any applications access कर सकते हैं
inkscape शब्द पर click करें
यह inkscape के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगा
inkscape संस्थापित होने के बाद हम इसके आगे remove और launch दो buttons देख सकते हैं
यदि आप सॉफ्टवेयर के संस्थापन को रद्द करना चाहचे हैं तो केवल remove button पर click करें
application को launch करने के लिए launch button पर click करें मैं इस पर click करती हूँ
inkscape application को launch करेगा
ubuntu software center पर वापस जाएं सबसे ऊपर back arrow बटन पर क्लिक करें और मुख्य स्क्रीन पर आएं
updates पर click करें
हम देख सकते हैं कि यह दर्शाता है software is up to date
ऊपर बाईं ओर refresh icon पर click करें
अब हमें एक os updates मिला
विवरण देखने के लिए इस पर click करें मैं इसे बंद करती हूँ
यदि आप इस अपडेट को संस्थापित करना चाहते हैं तो install button पर click करें अन्यथा इसे छोड़ दें
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा कि ubuntu linux 1604 operating system में terminal
synaptic package manager और ubuntu software center के माध्यम से सॉफ्टवेयर कैसे संस्थापित करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने पर प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध queries इस forum में post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस मिशन पर अधिक जानकारी दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ